इस फोटो में मुझे एक बाउंड्री दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में कुछ पहाड़ दिखाई दे रहें हैं।

मुझे इस फोटो में रेलवे लाइन दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में खाने की ट्रे दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक रूम दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारी साड़ियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो मे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी गिट्टी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक बहोत बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारे कैमरे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे दो ट्रक दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे है।